डेकोरेट किया गया है ऐ_सी भी लगा हुआ यहाँ पर टीवी रखा हुआ है दो चेयर रखी हुई है चेयर के सामने टेबल रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है।

और बहोत ही अच्छा व्यू है ये कमरे बहोत ही शानदार तरीके से सजाया गया है इस कमरे में जो कोटे है वोभी बोत सुन्दर लग रहा है जो रेड कलर का कोटन है।

किताब मिल जाएगी और बगल में जो दवाइयों की दूकान है वहा पर भी आप को हर दवाई मिल जाएगी और दिखने में दूकान पर दो आदमी भी--

और खीर है भिंडी है शिमला मिर्च है प्याज है करेला है गाजर है बैंगन है।

एवं देख रहे हैं कि किसी किताबों की दुकान पे कोई पूजा रखवाई गई है जैसे पूजा का दुकान का कोई मुहूर्त वगैरा हो रहा है।

प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी दुकान की जरिए उसकी रोजी रोटी में वृद्धि हो ताकि उसका घर बार अच्छे से चल सके और अच्छे से निर्वाह हो सके।

गाड़ियों में हम देख रहे हैं सफेद कलर की कार ब्लैक कलर की कार और--

ये मैं देख रही हूं रेलवे स्टेशन का दृश्य है जो बिल्कुल अभी खाली लग रहा है एक दो इसमें आदमी या पुरुष नजर आ रहे हैं चलते हुए।

ये दृश्य एक पार्क का है यानी इसको बाग भी बोल सकते हैं बगीचा भी बोल सकते हैं और उस बागीचे के सामने बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी है।

ये हम सामने कोई दुकान देख रहे हैं जिसमें बड़ा सा बोर्ड लगा है रेड कलर से।

और बहुत ही आसपास की दुकानें भी देख रहे हैं। फिलहाल ये रात का सी रात का दृश्य है इसलिए दुकानें बंद हो चुकी हैं।

ये जो हम देख रहे हैं ये एक साइकिल की दुकान है और यहां पर जो बोर्ड लगा है वो हीरो साइकिल साइकिल लिखा हुआ है।

सेल्फी खिंचवा रहा है किसी शादी के फंक्शन से दोनों बहोत ही अच्छे लग रहे है दोनों ने बहोत ही अच्छे कपड़े पेहने हैं इसी लिए--

और पर्दे हैं और रूम के दरवाजे और वगैरा सब बहोत ही अच्छे लग रहे--

दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल नजर आ रही है और उसकी कुछ दूरी पर हमको एक कार भी देखने को मिल रही है जो कार सफेद रंग की है।

ये हम जिस चित्र में देख रहे है यह एक किराना स्टोर की दुकान है जहा पर बहुत सबकुछ बाहर ही दिख रहा है यानि की बच्चों के खाने पिने की चिप्स वगेरा भी बहर ही--